यहां की दीवाले क्रीम ऑरेंज व ब्लैक कलर की है।

यहां गेट भी लगा हुआ है जो की नीले कलर का है।

यहां पे सब्जी भी नजर आ रहा है जो कि हरे पीले व सफेद कलर का है।

लड़का कान में इयरबड्स लगाए हुए दिखाई दे रहा है।

यहां पे लाइटें जल रही हैं जो कि सफेद कलर की हैं।

पॉलिथीन का कलर स्काई ब्लू ऑरेंज व येलो है।

यहां पे गुब्बाड़े लगे हुए हैं गुब्बाड़ों का कलर रेड व्हाइट ब्लू दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई प्रकार की लाइटें लगी हुई है जिनका कलर पिंक वाइट व येलो है।

यहां सामने एक दुकान खुली हुई नजर आ रही है जिसका नाम शुक्ला गन हाउस है।

यह एक रेस्टोरेंट है यहां की जमीन व छत सफेद कलर की दिखाई दे रही है।

यह एक बड़ा सा हॉल है यहां की दिवाले क्रीम व काली कलर की नजर आ रही है।

यह एक जंगल है यहां सामने गौतम बुद्ध की मूर्ति नजर आ रही है जो की गोल्डन कलर की है।

यहां काफी सारे पत्थर पड़े हुए हैं जो की काले व पीले कलर के हैं।

यहां सामने एक दुकान दिखाई दे रही है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गौर व्हील केयर ।

यह दुकान है। इसका नाम साहिबा हेडलूम है।

यहां काफी पेड़ पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।